ये एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जो की नीले कलर का है।

और बहोत बडा है इसमें एक शैडो दिखाई दे रहै हैं।

जहाँ पर बहोत सारे टूरिस्ट है स्केटिंग कर रहै है बहोत सारा शो है।

बहोत सारा फाग हो रहा है काफी सारी ठंड है बहोत सारे लोगों ने जैकेट पहना हुआ है बहोत सारे टूरिस्ट --

हैयर कट कर रहा है उस तरह कर रहा है वो ब्लू कलर की शॉप है।

यह एक लगी जो काफी दिखाई दे रहा है बाहर फ्लावर का डेकोरेशन हुआ है।

जिम बना हुआ है पास में कैंडल्स भी लगे हुए है।

बाहर एक डोरमेट है ग्रीन कलर का अंदर रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

अ रेड कलर का फ्लोर बिछा हुआ है।

एक व्यक्ति खड़ा है वो डायरेक्शन दे रहा है दूसरे लोग भी एक्सरसाइज कर रहै हैं।

मार्बल में बहोत अच्छी-अच्छी डिजाइंस बनी हुई है रेड और ग्रीन कलर में और गोल्डन कलर का डेकोरेशन --

यहाँ पूरा संगमरमर का काम किया हुआ है कुछ बारीक अक्षरों में नाम भी लिखे हुए हैं।

आसपास बहुत सारी हरियाली बहुत सारे पेड़ - पौधे दिखाई दे रहै है छोटे - बड़े --

ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है घर दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक कर्मचारी झाड़ू लगा रहा है।

क्यारियाँ बने हुए है प्लांट्स के लिए व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे ए_सी लगा हुआ है वो दिखाई दे रहा है।

ये एक जनरल स्टोर है जहाँ खाने-पीने का सामान रखा हुआ है।

गुड मॉर्निंग का ब्रेड दिखाई दे रहा है सफोला का ओट्स दिखाई दे रहा है।

एक फोटो है जहाँ से बहुत सारे बिल्डिंगे दिखाई दे रही है दूर से एक टावर दिखाई दे रहा है ।

जहाँ पर साड़ी रफ्फू कलर पॉलिश --

आदमी खड़ा हुआ है पास में एक और घर बना हुआ है।

बहुत सारे गेंदे का फूल का डेकोरेशन रेड रेड कलर के फ्लावर्स का डेकोरेशन --

--जींस पहनी हुई है जो स्क्रेप्पेड है पीछे बहुत सारी जिम की मशीन है एक व्यक्ति खड़ा है नीले रंग की शर्ट पहना है।

ब्राउन कलर का एक फैन है जिस पर वाइट कलर की पेंट है।

एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है जहाँ पर काफी सारे टू विलर दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति खड़ा हुआ--

काफी लोग बस में चढ़ रहै हैं चार मंजिला बिल्डिंग दिखाई दे रही है पीछे --

ईटों का घर बना हुआ है जिसमें व्हाइट कलर की ईट्टे लगी हुई है पीछे पेड़ - पौधे भी दिखाई दे रहै हैं।

सेवन थ्री नाइन थ्री ये ग्रे कलर की हैं।

एक चिड़िया दिखाई दे रही है जो कांच की बने हुए है वहाँ पे एक मोर दिखाई दे रहा है एक फिश चिपकी हुई है।

म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के टाइप में सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले के बैठे हुए ढोल है तबला है पियानो है हारमोनियम है और काफी सारे--

खुला आसमान लगा हुआ दिखाई दे रहा है घरों में ऐसी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ब्लैक कलर की चेयर है जहाँ रेड कलर काडेकोरेशन है कैंडल्स लगे हुए है।

हाइलोजेंस लगे हुए है व्हाइट कलर के स्टेज बना हुआ हैं।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

टेबल पर टिश्यू पेपर रखा है एक पॉट रखा है जिसमे रेड कलर के रोज लगे हुए है।

बाकी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठकर राइटिंग कर रहै है नोट कर रहै है व्हाइट कलर का--